यहाँ पे सामने एक लड़की हैं जो कि नृत्य कर रही हैं और उसने रेड वाइट कलर में साड़ी पहन रखी हैं और यहाँ पे उसने एक फूलो कि माला भी डाल रखी हैं अपने गले में ।

यहाँ पे सामने दो व्यक्ति दिखाई दे रहे एक व्यक्ति बैठा हुआ हैं चेयर पे सामने मिरर लगा हुआ हैं यहाँ पे ऊपर एक एलइडी टीवि लगी हुई हैं।